पार्लर की है और पास ही में कोरियर सेवा के लिए भी ऑफिस बनाया गया है।

रात्रि के समय भी लोग पैसे निकाल सकते हैं।

मंदिर परिषद के बाहर वेट कर रहे हैं और मंदिर के अंदर--

लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारे कमरों के व्यवस्था की गई है आस पास में --

लगाए गए हैं जिससे यह वातावरण को स्वच्छ करते हैं और यहां बुक भी मिलती है।

यहां पे इटालियन चाइनीस फूड मिलता है और यह एक फैमिली रेस्टोरेंट है यहां पे बहुत सारे बैलून --

निवास किया जाता था बी बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट में राजाओं के पुराने उपयोग के वस्तुएं कपड़े --

यहां पे मंदिर परिसर में बहुत अधिक फूलों से सजाया गया है।

बीकानेर के लिए परिवहन बस सेवा और सरकारी रोडवेज बस उपस्थित होती है।

चर्च में हो रहे एक भाषण का लुत्फ उठा रहे हैं यहां पे एक फादर --

दी गई तस्वीर पेट्रोल पंप की है यह एच_पी डीजल के नाम से प्रसिद्ध है यह बीकानेर के रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने --

इस है यहां बहुत ही पुराना और विश्वशनीय डीजल का केंद्र है यहां पर पेट्रोल डीजल और सभी --

आर_सी_सी छत एक विशेष उपयोगी पद्धति है जिसमें लोहे के सरियों के मध्य कांक्रीट भर कर के मजबूत छत का निर्माण किया जा --

दो तीन आदमी भी खड़े हैं और यहां पे केले के पेड़ हरियाली और बहुत अधिक संख्या में--

यहां पे एक इसके पास एक किराना स्टोर है और बोथुआ कांप्लेक्स के आगे--

दी गई जो सर चित्र है वो आशा सैनिटरी एंड बिल्डिंग मटेरियल का है इसमें हमें घरों और --

दिया गया चित्र एक विद्यालय का है विद्यालय के पीछे बालिकाओं के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है यहां पे सभी बालिकाएं --